चार चार आदमी हैं घर बना रहे हैं और एक कुर्सी हैं और एक दरवाज़ा बना रहा हैं और एक सीढी-सीढी बना रहा हैं और एक--

ताज है बड़ा -सा उसके नीचे मोर हैं।

एक मंदिर हैं एक घंटी हैं भगवान हैं एक आदमी पूजा कर रहा हैं फूल हैं और एक थाली हैं थाली में पता नहीं--